स्टेज का कलर ग्रीन है।

बाहर की तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है।

फैन भी लगा हुआ है।

उसके सिर पर तीन क्लिप लगी हुई है।

स्नेक्स भी रखे हुए हैं।

जो की इट पत्थर से बना हुआ है।

अंदर की तरफ एक टासफार्मर भी दिख रहा है।

जहां पर बहोत भीड़ लगी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट या पी_वी_आर है।